यह एक समुद्र है। यहां समूद्र में नीले कलर का पानी भरा हुआ है। काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

सुंदर चित्र है और यहाँ बहुत बड़ा मैदान है। बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत अच्छा है। यहां नीले रंग का पानी नदी में भरा हुआ है।

अपने खेतों को जा रही हैं और दूर-दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं नदी --

सफेद पैंट है और बैगनी कलर की शर्ट पेहने हुए है। यह दूकान रखी है।

नदी के किनारे का नदी में पानी भरा हुआ है नदी के किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

स्थान है। यहाँ पर जो है सा एक साधू खड़ा हुआ है चन्दन मस्तक पर लगाए हुए है।

बहुत सारी औरते बैठी हुई हैं। रंग बिरंगे वहां पर फुल लगे हुए हैं। फूल हरे कलर के हैं कोई पीले हैं कोई --